बजरंगबली का मंदिर है बहुत बढ़िया मंदिर है ये।

ये मेला है और औ वहाँ पे डिजिटल मेला डिजिटल मेला है यहाँ पर बहुत सारे लोग घुमने के लिए जाते हैं बहुत बढ़िया मेला है ये ।

पिंजरे में बंद है बट बहुत अच्छा खाना दिया जा रहा है और खाना तोता खा के और ये तोता बोलती भी है की हर किसी का बात समझ पात-पाता है तोता और ये बहुत बढ़िया तोता है हमारा।

और यहाँ पे सब लोग जाते है नहाने के लि --

ये है जिराफ और ये देखिये कितना बढ़िया लग रहा है।

यहाँ पे बिसलेरी पानी जो भी कस्टमर आएंगे उसके लिए पानी का स व्यवस्था भी है और यहाँ पे बहोत अच्छा से सेविंग करते है किसी प्रकार का कोइ दिक् --

और हमरे देश के लिए बहुत सारे सोंग और फिर डांस करके अपने कला को जाहिर करते है और सारे बन्दे अपने-अपने --

और जो बढ़िया है उसको हमलोग मार्केट में ले जा के बेचते हैं और ये बहुत तिक्खा मिर्च है और बहुत बढ़िया मिर्च है और कस्टमर बहुत अच्छी तरी --

बहोत बढ़िया से कटिंग भी होता है सेविंग भी होता है यहाँ पे।

और यहाँ पे जिला शिक्षक बहोत अच्छे तरीके से अपना काम करते हैं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे और अच्छे खासे ध्यान के साथ काम करते --

ये हरदोई में उपलब्ध है संधि पच्छी और यहाँ पे बहोत सारे पच्छी रहते हैं और यहाँ पे पेड़-पौधा बहोत सारा लगाया गया भी है और यहाँ पे बहोत वातावरण बहोत बढ़िया है।